ये पेड़ है हरे रंग के पत्ते नजर आ रहे हैं बड़े-बड़े जो की हरे रंग के हैं।

बाहर की ओर हरियाली है आसमान है अंदर काफी सामान रखा है और स्पीकर का डब्बा है।

सूखे पत्ते पड़े हैं हरियाली है हरे रंग के पेड़ है और थोड़ी धुंध भी है।

यह एक खूबसूरत घर का चित्र नजर आ रहा है जिसके आसपास पूरे हरे रंग के सोफे लगे हैं ।